और ऊपर एक पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें सामने एक टेबल दिखाई दे रही है जिस पर बहोत सारा सामान रखा हुआ है।